लैब में कुछ केमिकल रखे हुए हैं कुछ सीसी है।

एक सिलेंडर रखा हुआ है गैस सिलेंडर ।

ताले हैं हरा सा मैट रखा हुआ है।

यहां पर एक रेस्टोरेंट है जिसमें कुछ ब्लू और वाइट रंग के बैलून हैं।

यहां पर कुछ ऑटो है ऑटो पे लिख रहा है अतुल।

अंदर भी डी_सी_एम में खड़े हुए हैं।

शीशे के गेट लगे हुए हैं कुछ बोर्ड लगे हुए हैं।

पीछे के कंधे पर चादर है।

कुछ बैलून रखे हुए हैं।

सेक्सिस बैंक लिखा हुआ है।

पीछे पीले पीले रखे हुए हैं लाल कलर के हरे कलर के।

एक ट्रांसफॉर्म है खंभे हैं।

जिसमें कुछ गिटार टंग रही हैं लाल रंग के नीले कलर के ब्लैक कलर के।

कुछ कपड़े से रखे हुए हैं।

एक आदमी का सिर दिख रहा है।

यहां पर एक कमरा है कमरे में एक कूलर है।

दीवार पर हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है अने।

कुछ पन्नी टंगी हुई है श्री कृष्ण जी की मूर्ति बनी हुई है।

एक बोर पड़ी हुई है हरा हरा घास है।

इसमें कुछ सिमट है सरिये है।

कुछ जींस की पैंट है।

डिफेंस एकेडमी लिखा हुआ है।

यहां पर कुछ मूर्ति लगी हुई है भगवान जी की--

कुछ ऊपर लोहे का स्टैंड सा है।

पीले कलर की लाइट जल रही है।

जो पर्दे ब्लैक रंग के हैं।

यहां पर गंडासे हैं।

यहां पर बहोत सारे रखे हुए है।

ब्लैक कलर की टेपिंग सी हो रही है।

नीचे कुछ मिक्सी रखी हुई है।

यहां पर एक गुब्बारे लगे हुए हैं पिंक कलर के ब्लू कलर के व्हाइट कलर के।

इसपे लिखा हुआ है ए_वाई_यू_एस_एच_एम_ए_एन लिखा हुआ है पेट्स ।

बैग है यहां पर। रंग बिरंगे बैग हैं। बड़े बैग हैं छोटे बैग हैं।

शटर है यहाँ पर दुकान है।

कुछ बुक रखी हुई है।

यहां पर सरिए हैं कुछ लोहे के।

यहां पर एक घर है जिसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है जी_एस_टी_आई_एन कोड लिखा हुआ है।

यहां पर एक दुकान है जीसपे लिखा हुआ है सी_ए_पी_आर_इ_एस_इ ऐसे लिखा हुआ है वी_आई_पी लिखा हुआ है।

कुछ पतंग उड़ रही हैं बहुत सारी--

एक आदमी ऊपर सा है प्लस का निशान बना हुआ है।

ऊपर कुछ ए_सी लगी हुई हैं अलग अलग कमरे हैं जाली लगी हुई है।

एक बाइक खड़ी हुई है।

यहां पर कुछ पेन रखी हुई हैं।

पीछे कुछ टावर है बड़े बड़े से--

कुछ यहां पर पेन रखी हुई हैं। पेन बॉक्स है। एक चार्ज रखा हुआ है टाइपराइटर है।

साइड में मीटर लगा है।

टेबल है कुर्सियां हैं यहां पर।

कुछ रंग रखे हुए हैं। पेले कलर का रंग राल कलर का --